सब ने टोपिया पहनी हुई है सामने काफी लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं सब ने चुन्नी ओढ़ी हुई है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में अंधेरा दिखाई दे रहा है।

सामने एक जिम दिखाई दे रही है जिम में काफी सारे डंबल दिखाई दे रहे है काफी सारे सीट भी दिखाई दे रही है सीट काले रंग की दिखाई दे रही है।

नीचे काफी सारी घास भी दिखाई दे रही--

सामने दो पवन चक्की दिखाई दे रही है नीचे काफी घास फूस दिखाई दे रही है।

कभी पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे जिसके पत्ते हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

दो तीन औरत भी दिखाई दे रही है उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है पीछे काफी डेकोरेशन भी दिखाई दे रहा हैं नीचे लाल कार्पेट भी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग भी हमें कांच दिखाई दे रहे है खिड़कियां दिखाई दे रही है।

सामने काफी सारी कांच की खिड़कियां दिखाई दे रही है।

आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें मछलियां दिखाई दे रही है।

सामने स्टंप दिखाई दे रहे हैं पक्की मिट्टी दिखाई दे रही है।

घास हरे रंग की दिखाई दे रही है काफी पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है एक पीले रंग की दिखाई दे रही है एक क्रीम कलर की दिखाई दे रही है।

काफी सारे खटिया भी दिखाई दे रही है।

साइड में एक आदमी दिखाई दे रहा--

सामने काफी बच्चे दिखाई दे रहें हैं।

एक ढोल भी दिखाई दे रहा है।

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

और पीली धूप भी दिखाई दे रही है काफी पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

खिड़की है पर पर्दे दिखाई दे रहे है।

एक दरवाजा दिखाई दे रहा है काफी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

काफी फूल ही फूलों के मालाएं दिखाई दे रही है सब रंग से रंगी दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजे पर फोर जी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ऊपर कैमरे भी दिखाई दे रहे है।

आसमान ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक होल दिखाई दे रहा है।

रूम मैं दो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।